साड़ी का कलर पीला ऑरेंज मैंरून व ग्रीन दिखाई दे रहा है।

यह एक ग्राउंड है जो कि चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है।

यह एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जिसमें पानी भरा हुआ नजर आ रहा है यहां बाउंड्री घेरी हुई है ईंटों की--

यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है सिंचाई एवं जल संस्था विभाग उत्तर प्रदेश।

इसके अंदर लाइटें भी जल रही है जो की सफेद कलर की है।

वह एक बोलेरो भी सफेद कलर की दिखाई दे रही है।

यहां गुब्बारे लगे हुए हैं जो कि पीले सफेद नीले लाल कलर की दिखाई दे रहे हैं।

यहां पत्थरों का कलर पीला सफेद व काला दिखाई दे रहा है।

यह एक मॉल है यहां तरह-तरह के समान रखे नजर आ रहे हैं।

यहां कपाट बने नजर आ रहे है जिसमे सामान रखे हुए हैं।

यहां गते में सामान पैक रखा नजर आ रहा है।

तथा यहां काफी पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां की दीवालें सफेद और नीले कलर की दिखाई दे रही हैं।

यहां की दिवालें क्रीम सफेद ऑरेंज ब्लू कलर की नजर आ रही हैं।

यहां सर्कल और प्लस का सिंबल बना हुआ है।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

यहां लोहे की पाइपें दिखाई दे रही हैं यहां पेड़ भी लगा हुआ--